और उसका गाड़ी का एक पहि है गाड़ी का कलर है जो ब्लैक है आगे का इसका हेड है।

और लेफ्ट साइड में तूफानी पंखा रखा हुआ है एक उसके ऊपर बोर्ड है।